कृष्णा आर्ट मॉडल अं पेंट किया हुआ है।

यहां पर एक लड़का है ब्लैक सूट पहना हुआ है वो बॉयज से लॉन में वो अपनी सेल्फी खींच रहा--

पीछे फव्वारा नजर आ रहा है पानी के फव्वारे चल रहे हैं अंधेरी रात नजर आ रही--